लिनक्स environment और इसके कुशलतापूर्वक उपयोग करने के तरिकों में इस spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में एक कार्यरत लिनक्स system के सचित्र उदाहरणों की कोशिश के लिए अधिकतम उबंटु की आवश्यकता होगी
हम मानते हैं कि आप जानते हैं कि किस तरह लिनक्स operating systems के साथ शुरुआत करे और commands file systems तथा shell के बारे में कुछ मूलभूत ज्ञान भी है
यदि आप इच्छुक हैं या इन संकल्पनाओं को सुधारना चाहते हैं तो कृपया हमारी website पर उपलब्ध अन्य spoken tutorial के माध्यम से बेझिझक कीजिए
कृपया ध्यान दें कि उबंटु 1010 का उपयोग इस tutorial की recording के लिए किया गया था
कृपया यह भी ध्यान दें कि लिनक्स case sensitive है तथा इस tutorial में उपयोगित सभी commands lower case अन्यथा कथित हैं
लिनक्स environment निर्धारित करता है कि operating system आपके साथ किस प्रकार व्यवहार करता है आपकी commands का जबाब किस प्रकार देता है किस प्रकार आपके कार्यों को एंटरप्रेट करता है आदि
shell की settings में परिवर्तन करके लिनक्स को अधिक अनुकूलित कर सकते है
अब समझते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है
साधारणतः shell का व्यवहार shell के variables से निर्धारित होता है
shell variables दो मुख्य प्रकार के होते हैं
environment variables नामित हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ता के संपूर्ण environment में उपलब्ध हैं
यह shells द्वारा बनाये गए सबशेल में भी उपलब्ध हैं जैसे के shells scripts को रन करने वालो की तरह
local variables जैसे के name से पता चलता है उनकी प्रतिबंधित या सीमित उपलब्धता है
ये shells द्वारा बनाए गए सबशेल के लिए उपलब्ध नहीं हैं
जबकि इस tutorial में हम मुख्य रूप से environment variables के बारे में बात करेंगे पहले देखते हैं कि इन variables की value कैसे let सकते हैं
वर्त्तमान shell में सभी उपलब्ध variables को देखने के लिए हम command set को चलायेंगे
terminal पर type करें set space वर्टिकल बार मोर और enter दबायें
हम सभी वर्त्तमान shell variables को देख सकते हैं
उदाहरणस्वरूप home environment variable पर देखकर इसके लिए नियत value पर भी ध्यान दें
सूची के माध्यम से स्थानांतरित होने के लिए enter दबायें बाहर आने के लिए q क्यू दबायें
यहाँ variable सूची की सुनियोजित multipage output को और अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए set में से output को क्रम में किया है
केवल environment variables देखने के लिए इएनवी env command चलायें
terminal में type करें env verticalbar more इएनवी space verticalbar more
उदाहरणस्वरूप
फिर से सूची के बाहर आने के लिए आप क्यू q दबायें
अब लिनक्स में कुछ अधिक महत्वपूर्ण environment variables पर चर्चा करते है
हम यहाँ अपने सभी प्रदर्शनों के लिए bash shell का उपयोग करेंगे
विभिन्न shells थोड़ा विभिन्न तरीकों से अनुकूलित हैं
variable वास्तव में क्या संग्रह करता है यह देखने के लिए हमें उस variable के name के आरंभ में dollar चिन्ह लगाना है और उसके साथ echo command का उपयोग करना होगा
प्रथम environment variable जिसे हम देखेंगे वह है shell variable
यह वर्त्तमान shell का name संग्रह करेगा
shell variable की value क्या है देखने के लिए echo space dollar shell terminal पर echo space dollar shell capital में type करें और enter दबायें
यह/bin/bash /bin/bash shell है जहाँ हम फ़िलहाल ऑपरेट कर रहे हैं
दूसरा variable home home है
जब हम लिनक्स में login करते हैं यह साधारणतः हमें एक निर्देशिका directory में स्थान देता है जिसका named हमारे यूजरनेम पर रखा होता है
इस निर्देशिका directory को home निर्देशिका directory कहते हैं और यह वास्तव में यह वही है जो home variable में उपलब्ध है
value देखने के लिए terminal पर echo space dollar home terminal पर echo space dollar शेल capital में type करें और enter दबायें
अगला environment variable path path है
path path variable में निर्देशिकाओं directories के एब्सोल्यूट path होते है जिनमें से shell को निष्पादन योग्य command की खोज करनी होती है
अब path path variable की value देखते हैं
फिर से terminal पर echo space dollar पाथ echo space dollar path बड़े अक्षर में type करें
मेरे computer पर यह/user/local/sbin/user/local/bin/user/sbin/user/bin आदि निर्देशिकाएँ डाइरेक्टरिस दिखाता है
यह एक से दूसरे system पर थोड़ा भिन्न हो सकता है
वास्तव में यह colon delimiter द्वारा विभाजित निर्देशिकाओं directories की सूची है जहाँ से shell इस क्रम में एक निष्पादन योग्य command की खोज करेंगा
हम इस सूची में अपनी खुद की निर्देशिका directory जोड़ सकते हैं ताकि shell द्वारा हमारी निर्देशिका directory भी ढूँढी जाय
अपनी खुद की निर्देशिका directory को जोड़ने के लिए terminal पर type करे
पाथ बड़े अक्षर में equalto dollar पाथ फिर से बड़े अक्षर में colon/home/<the _ name _ of _ my _ own _ home _ directory> और enter दबायें
अब यदि हम path की value का अनुकरण करें यानि echo करे
हमारी संकलित निर्देशिका directory भी path variable का एक भाग हो जाएगी
निर्देशिका directory को देखें अब यहाँ मौजूद है
एक और दिलचस्प variable है लोगनेम
यह वर्तमान सक्रिय यूजर के यूजरनेम को संग्रहीत करता है
value देखने के लिए type करे echo space dollar logname और enter दबायें
जब हम terminal को खोलेंगे हम dollar चिन्ह देख सकेंगे जो prompt है जिस पर हम अपने commands enter करते है
यह environment variable पीएसवन द्वारा प्रतिनिधित प्राथमिक prompt string है
यहाँ एक द्वितीयक prompt string भी है
यदि command लम्बी है और यह एक line से अधिक फैलती है तो दूसरी line की शुरूआत से हम prompt के रूप में greater दैन का चिन्ह > देख सकते हैं
यह environment variable पीएसटू द्वारा प्रतिनिधित द्वितीयक prompt string है
द्वितीयक command prompt को देखने के लिए terminal पर echo space dollar पीएसटू बड़े अक्षर में type करें और enter दबायें
हम prompt पर at द rate <@> कहकर अपने प्राथमिक prompt string को बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए पीएसवन बड़े अक्षर में इक्वल –टू अब उद्धरणचिन्हों के भीतर ऐट द rate type करें और enter दबायें
अब dollar चिन्ह के बजाय हमें prompt के रूप में एक at द rate का चिन्ह दिखेगा
हम कुछ अधिक दिलचस्प कर सकते हैं जैसे हम अपने यूजरनेम को prompt के रूप में दिखा सकते हैं
केवल पीएसवन बड़े अक्षर में इक्वलटू उद्धरणचिन्हों के भीतर dollar लोगनेल type करें और enter दबायें
अब मेरा यूजरनेम मेरा prompt है
वापस आने के लिए पीएसवन इक्वलto उद्धरणचिन्हों के भीतर dollar type करें और enter दबायें
हमने कई एन्वाइरन्मन्ट variables की values को नियत किया है
लेकिन एक but का ध्यान रखें कि यह संशोधन केवल वर्तमान सत्र के लिए ही अनुकूल हैं
जिस तरह हमने अपनी निर्देशिका directory को path variable में जोड़ा था
यदि हम terminal बंद करते हैं और इसे फिर से खोलते हैं या पूर्ण रूप से एक नया terminal खोलते हैं और path variable को उसकी value द्वारा की जाँच करते हैं
हम यह देककर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे संशोधन मौजूद नहीं हैं
इन संशोधनों को हम स्थाई किस तरह रख सकते हैं यह आगे आने वाले tutorial में कवर किया जायेगा
अक्सर हम command को पुनः निष्पादित करना चाहते हैं जिसे हमने हाल ही में निष्पादित किया था हम क्या करे क्या हम पुरे command को पुन: type करे
नहीं इसके कई समाधान हैं
पहले साधारणतः यदि आप अपने keyboard में अपडायरेक्सन की की को दबाते हैं तो यह आखिरी command दिखायेगा जो कि आपने टाइप की है
की को दबाकर रखें और यह पिछली commands में से स्क्रोल करता रहेगा
पीछे जाने के लिए downडायरेक्सन की की दबायें
लेकिन जब आप कई commands से scroll करते हैं यह थोड़ बेढंगा और अरोचक हो जाता है अच्छा यह होगा कि history commands का उपयोग करें
prompt में history type करें
और enter दबायें पिछली निष्पादित commands की उपस्थित सूची देखें
यदि लम्बी सूची के बजाय आप केवल आखिरी दस देखना चाहते हैं
history space 10 type करें और enter दबायें
ध्यान दें इस सूची में प्रत्येक पिछली निष्पादित commands के लिए number नियत है
विशेष command को दोहराने के लिए
type करें विस्मयादिबोधक चिह्न इक्स्लामेशन mark जिसके बाद command का number उदाहरणस्वरूप 442 मेरे case में echo space dollar path निष्पादित करेगा
यदि आपको पिछली command को निष्पादित करने की आवश्यकता है केवल दो बार इक्स्लामेसन चिन्ह type करें और enter दबायें
अगला विषय जो हम देखेंगे उसे tilde substitution कहते हैं tilde ~ चिन्ह home directory के लिए शोर्टहैंड है
तो कहें आपके पास testtree name की एक directory आपकी home directory में है आप सीडी space tilde slash testtree टाइप करके इस तक पहुँच सकते हैं
प्रेसेंट working directory और पिछली इस्तेमाल की गयी directory के बीच toggle भी कर सकते हैं यह command देकर
जैसे कि अभी हम testtree directory में हैं पिछली directory जिसमें हम गये थे वह home directory थी
तो यदि हम सीडी space माइनस चलाते हैं यह home directory में चला जायेगा
इसे फिर से run करे और आप testtree directory में वापस आ जाते हैं
आखिरी लेकिन काफी महत्वपूर्ण command जो हम देखेंगे वह है एलाइस command
ऐसा हो सकता है कि आप के पास लम्बी command हो जिसे बारबार चलाने की जरूरत पड़े
इस मामले में हम इसे एक छोटा एलाइस name दे सकते हैं और कमांड को चलाने के लिए एलाइस name का उपयोग कर सकते हैं
मानिए कि आपके पास ऐसी एक लम्बी directory क्रम है जिस पर आप अक्सर संगीत के लिए जाते हैं आप इसके लिए इस प्रकार एक एलाइस तैयार कर सकते हैं
एलाइस space सीडी music इक्वलटू दोहरे उद्धरणचिन्हों के भीतर सीडी space/home/arc/files/एंटरटेनमेंट/music type करें और enter दबायें
अब प्रत्येक समय इस directory में जाने के लिए केवल सीडीम्यूजिक लिखें और enter दबायें
देखें अब हम music directory में हैं
अब आप पिछली working directory में जाने के लिए prompt में सीडी space माइनस type कर सकते हैं
इस एलाइस को निरस्त यानि कैन्सल करने के लिए केवल अनएलाइस space सीडी माइनस टाइप करे और enter press करे
अब फिरसे यदि आप terminal से सीडीम्यूजिक लिखते हैं आपको एक error मिलेगा कि command मौजूद नहीं है
मान लो कि हमारी present working directory में हमारे पास test1 और test2 दो files हैं
और यदि rm आरएम test1 चलाते हैं test1 डिलीट हो जाता है
rm जानते हैं कि आरएम command का hyphen i पर्याय हटाने की प्रक्रिया interactive कर सकता है
तो rm एलाइस आरएम equalto अब उद्धरणचिन्हों के भीतर आरएम space –i जैसा एक एलाइस set कर सकते हैं
अब जब rm आरएम आरएमi चलायेंगे वास्तव में चलेगा यानि now होगा
तो हमने देखा कि जब test1 डिलीट हो जाता है system test2 डिलीट करने से पहले पूछता है
तो इस tutorial में आपने एन्वाइरन्मन्ट variables history और एलाइजिंग के बारे में सीखा
यह मुझे इस tutorial की समाप्ति की ओर लाता है
spoken tutorials talk to a teacher project का हिस्सा है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा mission ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है
अधिक जानकारी हमारी website पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख अब आप से विदा लेती हूँ धन्यवाद